यह एक रास्ता है। जिसपर बहुत सी गड़िया चल रही है। एक पीछे कार भी खड़ी हुई है। एक ऑटो भी है और एक सामने बाइक भी है।

यह एक ऑफिस है इसमे लोग बैठे हुए है यहाँ बहुत सी चैअर्स रखी हुई है।

उसके हाथो पे एक मोबाइल है वह बैंक की तस्वीर निकाल रहा है।

यह एक डेअरी है जिसके बाजू मे एक एयरटेल फोर जी का टॉवर भी लगा हुआ है डेअरी के बाहर बहुत सी गाड़ी--

की दुकान पर बहोतसे कपड़े रखे हुए है की दुकान पर एक घड़ी भी है।

एक लडकी ने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी है और तीन लड़कियों ने पीले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है उन्होने पेर मे शुज भी पेहने हुए है।

वह उनमें कूद रहे है बहुत से बच्चो ने पीले रंग की शर्ट भी पहनी हुई है।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

यह एक मस्जिद है जिसके अंदर बच्चे आदमी कुछ लेडी नमाज पद रहे हैं उनके सामने--

सामने कुछ लोग खड़े है उन्होंने व्हाइट कलर की कुर्ती पहनी हुई है। उनके पास माइक भी है।

ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई है उन्हे देखने के लिए बहुत से लोग भी है उसके बाजू मे बहुत सारे दुकान भी है।

यहाँ पर बहुत सारी गड़िया बस ऑटो रिक्षा भी खड़ी हुई है एक आदमी भी खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है एक चाय की दुकान है।

गुलाबी कलर की है व्हाइट कलर की है पीले रंग की भी बहुत सारी फुल है आसपास बहुत सारे पेड़ पोधे भी लगे हुए है।